इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक नदी है जहां पर देखिए ऊपर की तरफ पूल बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर नदी के बीच में --

इस दृश्य में हम देख पा रहें हैं ये एक दुकान है जिसका आधा शटर खुला हुआ है। यहां पर देखिये ऊपर की तरफ टैक्स एसोसिएट लिखा हुआ है और यहाँ पर सामने --

किशी के उप्पर कुछ पर्चे चिपके दिखाई दे रहे हैं।

ट्रेन खड़ी हुईं है और जहां पर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है ये दृश्य रात --

पर की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं। दूर पर बहुत से बड़े-बड़े मकान और पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में देख पा रहा है ये एक बोहोत सुंदर से मस्जिद बनी हुई है। यहां पर देखिए मस्जिद की एक बोहोत ऊंची सी मिनार बनी हुई है।

यहाँ पर महजीद के आस-पास कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहें है ये एक खेत दिखाई पड़ रहा है जहां पर कुछ घांस हरी और कुछ घांस सुखी लगी हुई है। यहां पर बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए --

इस दृश्य में हम देख पा रहे है। ये एक मंदिर है। यहाँ पर देखिए बहोत भीड़-भाड़ है। यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग जमीन पर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर झंडियाँ भी लगी हुई हैं।

बहोत सारी समान रहा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बहोत सारी लाइटें जल रही हैं। यहां पर एक --

ट्राली रखी हुई है। ट्राली में भी कुछ समान रखा हुआ है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक दुकान बनी हुई है जिसमें की एसबीआई का एटीएम है। यहाँ पर देखिये अंदर की तरफ मशीन रखी हुई है।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक कपड़े की दुकान है। यहां पर देखिए बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे व --

सोफ़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक दूल्हा और दुल्हन खड़े हुए। यहाँ पर रंग-बिरंगे फूल लगे हुए हैं। दूल्हा-दुल्हन देखने मे बोहोत सुंदर लग रहे हैं।

सामने की तरफ एक माइक लगा हुआ है जहाँ पर एक औरत खड़ी हुई कुछ बोलती हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य मे हम देख प रहे हैं ये एक बाजार है जहां पर देखिए बोहोत सारे लोग --

बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जमीन पर बोहोत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

और बोहोत सारे झंडे लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर बहुत सारे सजावट --

और यहां पर कुछ बड़े-बड़े पौधे भी लगे हैं। बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए --

खाई पड़ रहा है यहाँ पर देखिये बहोत बड़ा सा मैंदान है यहाँ पर दू --